सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है | बिल्डिंग में कुछ खिड़की व दरवाजा नजर आ रहे हैं |

बिल्डिंग में कुछ दुकाने नजर आ रहे है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई है।

ज्यादा पेड़ नजर आ रहे हैं सामने कुछ कच्ची मिट्टी भी नजर आ रही है।

पूल के उस पार एक हरे रंग का पैनल लगा हुआ है | कुछ बिजली के खम्बे भी दिखाई दे रहे हैं | ऊपर आसमान है |

एक बहुत बड़ा जंगल है जंगल में हरी-भरी घास और सुखी मिट्टी नजर आ रही हैं।